बहोत सारे सामान लैब में रखे हुए हैं।

बगल में रंग बिरंगी कवर करने वाली दिख रही है।

इस फोटो में सामने एक सीढ़ी दिख रही है।

सामने एक बिल्डिंग भी दिख रही है।

जमीन पर घास भी दिख रही है।

लाइन से बिल्डिंगे भी दिख रही है।

बाहर बहोत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं और जीना भी दिख रहा है।

इस फोटो में एक आइसक्रीम की दुकान दिख रही है।

इस फोटो में एक सामने रोड दिख रही है।

छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

एंट्री गेट भी दिख रहा है।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

ग्राउंड भी दिख रहा है।

मंदिर के नीचे बोहोत सारी लाइटें भी जल रही हैं और खिड़कियां भी दिख रही हैं।

जमीन पर टाइल्स बिछी हुई है।

एक बैनर भी लगा हुआ है।

दो बैग रखे हुए हैं एक रेड और एक ब्लैक ।

बाहर पेड़ लगा हुआ है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

इसमें चार कुर्सियां दिख रही है रामा ग्रीन कलर की।